लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करना काफी पसंद करते हैं और इस जिम में--

इस कार्यालय में बहुत सारे कार्य होते हैं यहाँ पे लोग आते हैं गाँव के लोग और अपनी समस्याओं का--

समाधान कराते हैं यहाँ पे मुखिया पंचायत समिति और भी बहुत से पंचायत सचिव लोग बैठते हैं।

यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे शिक्षक होते हैं।

अच्छा लगता है लोगों को यहाँ पे सभी जगहों की बस आसानी से मिल जाती हैं।

यहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं सैलून में बाल कटाने के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बाल काटा जाता है।

यह एक बस स्टैंड है और यह बस स्टैंड काफी बड़ा है यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं बस पकड़ते हैं और एक जगह से--

बहुत प्रकार के खेल खेलते हैं यहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल यहाँ पे लोग दौड़ने भी आते हैं एक्सरसाइज भी करते हैं।

बहोत ही अच्छे से यहाँ पर दाढ़ी भी बनवाते हैं यहाँ पे मशीनों के द्वारा बाल काटा जाता है।